ये बिल्डिंग है इसके अंदर पांच लोग दिख रहे है एक सफाई कर रहा हैं तीन उधर जा रहा है एक बैग टांग के इधर खड़े हैं